सोफ़ा सजाया हुआ बहत अच्छा गद्दे लगे हुए हैं गोल्डन कलर के दीवार हैं ।

और फूल वगैरा रखे हुए हैं गमलों में। बहुत अच्छा लोकेशन है।

दुकान नज़र आ रहे हैं। लोग यहाँ फल लेने आते हैं।